यहाँ पे जो है बडा सा रोड जा रहा है और इसके साइड मे बहुत सारे बिल्डिंग्स नजर आ रही है और कुछ इस साइड मे बिल्डिंग्स है और बिच मे से रास्ता जा रहा है।

यहाँ पे जो है मार्केट एरिया जो होता है ये नजर आ रहा है और यहाँ पे बड़े बड़े बिल्डिंग्स नजर आ रही है एक जो बाटा करके शॉप हे उसके साइड मे बड़ी सी बिल्डिंग उसके सामने भी एक बड़ी सी बिल्डिंग हे और बिच मे से रास्ता जा रहा है।

कुछ जो है ऑटो रिक्शा से जा रहे है कुछ स्कूटी जा रहे है और कुछ साइकिल से जा रहे है और बहुत यहाँ पे भीड़ नजर आ रही है।

यहाँ पे जो है की एक बॅट की शॉप है जहा पे बहुत प्रकार के बॅट्स जो होते है जिस से हम क्रिकेट खेलते है वो वाली बॅट्स यहाँ पे रखी गई है।

और साइड मे जो एक बडी सी दीवार दिख रही है और आजु-बाजु मे कुछ भी सामान नहीं रखा है।

यहाँ जो है की एक मुर्गियों का जो फार्म होता है फार्म हाउस या फिर उसे फार्म बोलते है वो यहाँ पे है और यहाँ पर बहुत सारी क्वानटिटी मे जो मुर्गिया है वो यहाँ पर रखी गयी है।

यहाँ पे जो है की एक लाइब्रेरी जो हम बोल सकते है इसीको या फिर एक कम्पार्टमेंट या फिर ऑफिस है जो की पूरा कम्पार्टमेंट पूरी तरह से डिवाइड किया गया है।

पीछे जो है बडी बडी पेड़ नजर आ रही है और ओ घनदाट काला जैसा दिख रहा है और आजु बाजु मे जो है हरयाली ही हरयाली दिख पडी है।